ऊपर से एक छतरी लगी उसमें से पानी निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सीढ़ी लगी हुई--

ऊपर एक दो लोहे के एंगल लगे हुए और यहां पे एक पर्दा सा लगा हुआ --

और यहां पे खाना ऑर्डर करने वाली पूरी रसीद रखी हुई है।

तीन लोहे के खंभे लगे हुए हैं उनके ऊपर से तार गया हुआ और ये--

फाटक लगा हुआ हैं जो लोहे का लगा हुआ है और यहां पे एक खजूर का पेड़ है बड़ा सा।

आगे कांच के अ किमाड लगे हुएं हैं और बाहर कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

ऊपर टीन पड़ी हुई है और बड़ा बड़े अक्षरों में पोस्टर लगा हुआ है।

लाल पीली बसें खड़ी हुई है और बहुत सारे लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं।

चारों ओर से लोहे के एंगल लगे हुए और बड़ी छत पड़ी--

ऊपर टिन पड़ी हुई हैं और कु और यहां पे ईंटें लगी हुई हैं डिजाइन कलर की।

बहुत सारी नीचे मिट्टी पड़ी है और पीछे गन्ना वगैरह खड़ा हुआ है।

होटल देखने में बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

ये गोल गोल रखे हुए है और ये बहुत सारी पंखुड़ियां रखी हुई दिखाई पड़ रही है।

दो लोग हैं जो वापस काम कर रहे हैं और आपस में बतला भी रहे हैं और यहां--

बहुत सारी लड़कियां हैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए और यहां पे एक मूर्ति बनी हुई है जो पीछे की ओर धनुष लिए पकड़े हुए--